है। फोर व्हीलर दिखाई जा रही है और रेड कलर के पीछे के लाइट लगे हुए है। सामने में जो आदमी क्लीन कर रहा है फोर व्हीलर में कुछ --

लिखा हुआ दिख रहा है कोई एरिया जहां बाहर में पिंक कलर रेड और व्हाइट कलर में--

सामने के दरवाजे जो है वो वाइट कलर में दिखाये जा रहे उपर मे छोटी छोटी सी लाइट लैंप जैसे--

पीले मट्टे से भर-भरे बालू जैसे दिख रहीं हैं। पीछे साइड में कुछ पहाड़ दिख रहें--

किसी इलेक्ट्रिक के कारखाने टाइप की दिखाई गई है जहां कुछ लोग बैठे हुए हैं टोपी पहने हुए सामने में--

और सामने में कुछ व्हाइट कलर की चबूतरे जैसी बनी हुई दिखाई जा रही है जहां पर मिट्टी भी देख रहे हैं।

किसी ऑफिस को दिखाया गया है जहां पे रिसेप्शन में एक लड़की बैठी हुई है उसके फेस को हाईड किया गया सामने में एक--

नए कलर की डस्टबिन दिखाई गई है सामने में टेबल चेयर लगे हुए हैं।

कुछ छोटे मोटे पेड़ दिखाएं गए हैं जिसके ऊपर व्हाइट कलर में कुछ लिखा हुआ पेपर चिपका हुआ है कुछ स्टॉल के ठेले भी दिख रहे हैं सामने--

किसी गैरेज टाइप को दिखाया गया जहां ब्लैक कलर की एक फोर व्हीलर लगी हुई है अंदर में कुछ ऑरेंज टाइप के--

छोटे-छोटे लाइट लगे हुए नीचे की जमीन सीमेंट की दिख रही है उस पे कुछ सूर्य की किरण पड़ते दिख रही है और कुछ छत के वजह से --

सामने में एक बाल्कनी दिखाया गया है जो कि कांच का है ऊपर में फैन लगे हुए हैं।

दिखाई दे रही है जिसमें राउंड शेप में लाईटें लगी है एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में--

एक जे_सी_बी को दिखाया गया हैं जो कि ऑरेंज कलर का है और जंग लगे हुए--